हमें यहाँ पर बहोत बड़ी सी दुर्गा जी की मूर्ति दिख रही है।

सीढ़ी के ऊपर तो गुंबज लगे हुए हैं।

हमें यहाँ पर बहुत सारे लोग दिख रहे हैं।

और यहाँ पे एक शर्ट टंगा हुआ है और --

और पेड़-पौधे दिख रहे हैं और इमारत दिख रही है जिसके अंदर खिड़की दरवाजे लगे हुए है।

और मंदिर के ऊपर एक मूर्ति खड़ी हुई है।

और बहुत सारी रेत रखी हुई हैं और रॉड भी लगा हुआ है छत के ऊपर।

जिसके ऊपर सूर्य नारायण धाम लिखा हुआ है।

और यहाँ पे बहुत सारे डिब्बा रखे हुए हैं काउंटर के ऊपर।